यह एक फैक्ट्री हे जहाँ पर लोहे लकड़ो का काम किया जाता हे.

और यहां पे आग जली हुई है और चार लोग हैं और एक आदमी आग से लोहे को पिघला रहा है.

एवं उनके हाथों में रिवोल्वर हैं एवं उनका चेहरा नहीं दिख रहा है और लाल कलर के पंख लगे हुए हैं.

ऐ_सी लगा हुआ है यहां पे और सामने पर्दा भी लगा हुआ और एक छो--

छोटा बच्चा बैठा हुआ है और बॉटल्स पड़ी हुई है चौकी पर एवं बालसीत भी है और ब्ले--

यहाँ बुद्ध भगवान बुद्ध का फोटो लगाया हुआ है एवं बगल में भीमराम आम्बेडकर का फोटो लगाया हुआ है.

और दो व्यक्ति बैठे हुए हैं जो की वाइट कलर के कपडे पहने हैं और यहाँ बोहोत सारे चेयर्स लगे हुए हैं.

और यहां पे दो एक सफेद कर कार लगी हुई है।

बहुत सारी बाईकें लगी हुई है एक व्यक्ति बाइक के ऊपर बैठा है।

यह एक घर हे जो की दो मंजिला हे.

लिखने की चीज़े हैं और यहाँ पे दो व्यक्ति हैं एक व्यक्ति ने चश्मा पहना हुआ हे और एक व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख रहा है.

और यहाँ एक मोड़ हे जहा पे इलाहाबाद बैंक लिखा हुआ हे एक व्यक्ति मोड़ के बीचो बिच हे और बहोत सारे व्यक्ति आगे जा रहे हे.

कुछ बच्चीयों का चेहरा भी नहीं दिख रहा है और बेंच लगे हुई हैं और सामने चेयर्स भी हैं.

यह एक बड़ा सा मैदान है जहां पे हरे हरे घास दिख रहे हैं।

पर एक लड़की है जी-जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है काले कलर का पहनी हुई है और हाथ में एक बेग है.

ओर यहां पे बोरा भी है और इस एक कार व्हाइट कलर का सीट भी लगा हुआ है.

और अलक सर का फोटो नहीं दिख रहा है और यहां पे बहोत सारे बांस लगे हुए हैं.

अरे उसका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है और स्प्राइट का चिह्न भी दिया हुआ है.

और एक खंभा भी सामने लगा हुआ है और बहोत सारी व्यक्ति उस पर झूल रहे हैं और खेल रहे हैं.

यह देवघर का बैधनाथ धाम स्टेशन है जो की काले रंग से लिखा हुआ है.

एक व्यक्ति पीले कलर का गमछा लगा हुआ है और एक व्यक्ति फोन से बात कर रहा है और यहां पे बहुत सारे खंबे लगे हुए हैं.

यह एक लाइब्रेरी है जहां बहुत सारे बुक्स लगे हुए है और यहां पे कतार बद कुर्सियां लगे हुई है.